और यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा हैं और यहाँ पर छी-- सीढियाँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर बहोत बहोत सारे आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे--

बहुत सारी औरत दिखाई दे रही है और एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है उसपे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक मतलब पंखा भी दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर मुझे एक चैनल गेट दिखाई दे रहा है और उसके बगल में गाड़ी खाड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक मुझे कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है उसमे होल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ भी दिख रहा है और यहाँ पर --

बड़ा पर्दा दिखाई दे रहा है उसके बगल मे एक शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मुझे वो आदमी के हाथ मे कड़ी दिखाई दे रही हैं और वो आदमी के हाथ में दिखाई दे रही है उसके आदमी के आँख दिखाई--

मुझे यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही हैं और उसके पास में मुझे एक बोरी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर मुझे प्याज़ की कट्टी दिखाई दे रही हैं।